उसमें अलग अलग खेल के नेट लगी हैं कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं।

इस फोटो में बास्किन रॉबिंस आइस्क्रीम पार्लर है।

पेड़ लगे हैं घास फूस हैं सारों।

एक लगा है। अवन माइक्रोवेव जैसा भी कुछ है।

इस पिक्चर में द क्राइस्ट द किंग कैपिटल करके स्कूल है।

मंकी बनाया हुआ है बहुते ही बड़ी डेकोरेशन की है काफी सुंदर जगह लग रही है।

पाक जैसे कोई पुराना जू या कुछ ऐसा--